मस्जिद आ रहा है।

यहां पर हमें एक दुकान भी दिख रही है।

यहां पर हमें गेट के ऊपर फुलावर्स दिखाई--

एक स्कूल दिखाई दे रहा है।

लिखो हुआ नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में हमें बहोत सारी--

इस पिक्चर में हमें लैश--

हमे एक लड़का दिखाई दे रा है।

लग रही हैं।